किन्हीं को अगर सोनी कंपनी का कोई भी सामान खरीदना है। तो ओ यही दुकान में आके अपना सामान खरीदें।

और उसका जीवन में जो भी कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी उनको मिल जाता है।

हर किसी को ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि गलत काम करने से अच्छा है कि कुछ मेहनत करके अपना खाना-पीना खाए रोज़ी-रोटी करें।

यह प्रोग्राम हिन्दुओं के द्वारा रखा गया है और बताया जा रहा है कि हमारे हिन्दू नीति कैसे करना चाहिए। हमारे अपने देवी देवताओं को ऐसे आदर्श के साथ उन्हें पूजना चाहिए। बहुत ही अच्छा चीज़ है हर किसी को बताना चाहिए।

यह प्रतिमा बनाने में लगभग दो साल लगा था। ऐसा माना जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है।